इस पिक्चर में एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जिसका नाम लाइफ वर्थ हॉस्पिटल है।

एक लेनेवो का है एक एच_पी वर्ल्ड का है एक अजय टेलर्स एंड क्लॉथ का है।

वहां प्रणाम लिखा हुआ है बगल में एक झूला भी है काफी सारे बच्चे उसमें खेल रहे हैं।

पीछे दीवार पे प्लस का साइन बना हुआ है काफी सारे बच्चे हैं आदमी हैं औरत है ऊपर हाथ किए हुए खड़े हैं सब लोग।

ये ग्रीन कलर के बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है आसपास में लोग भी बैठे हुए है बगल में पेड़ भी लगे हुए है।

जैसे कि पेन पेंसिल रबर शार्पनर काफी सारी चीजें--

तीन लेग्स मनी मशीन हैं वहां एक लड़की बैठी है।

यहां काफी सारे लोग नीचे बैठे हुए हैं ऊपर काफी सारी लाइट्स चल रही हैं।

मुझे इस पिक्चर में एक छोटी सी गुफा दिखाई दे रही है।